यह एक स्कूल या हॉस्टल का तस्वीर दिखाई दे रही है यह एक हॉस्टल या स्कूल की तस्वीर है जिसमे बरामदा बरामदा कुछ खंबे दिखाई दे रही है जिसमें स्कूल बच्चे लोग कोई पढने जाते है।

इस तस्वीर में एक फैशन --

यह एक टेबल है टेबल के ऊपर कुछ फूलों को फूलों की श को सजाकर रखा गया हुआ है यह फुले फुले कुछ बाँस की--

यह एक पार्क की फोटो दिखाई दे रही जिसमें वाटर पार्क है इसमें बहुत सारे बच्चे अ बच्चे यहाँ वाटर पार्क में नहाने व धोने आए हैं ।